रंग-बिरंगे के फूलों से बनी हुई है काफी अच्छे से अच्छे से डिजाइन करके और एक बीच में गोल सा--

काफी शांत जगह है ये काफी बड़ा-सा मैदान भी है।

रोशनी से गंगा का नदी का पानी बहोत सुंदर दिख रहे है।

जहाँ पर काफी तरह के आईस्क्रीम घी केक --

पेड़-पौधे भी है गंगा नदी भी बहोत बड़ी--

एक बहुत बड़ा घना जंगल है।

मूवी हॉल है जिसमें कितने सारे चेयर्स लगे हुए है और लाइट भी बहोत अच्छे है।